इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक देवस्थान दिखाई दे रहा है जिसके बाहरी तरफ में जाने का दरवाजा लगा हुआ नजर आ रहा है।

जो जिसमे लोग यात्री जो की चल रहे हैं और कुछ खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा --

इस तस्वीर मैंने देख पा रहा हूं मुझे पीछे की तरफ में ये एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुरकुरे और नमकीन जोकि लगाई हुई है और --

बाहर की तरफ में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं ये एक रात का दृश्य है जहां की चमकदा--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है और बाइक दिखाई दे रही है दो नीले कलर के ड्रम रखे गए जो कि व्यू दिखाई दे रहा और --

और ये एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा है मुझे एक हॉल नजर आ रहा हैं जिसमें दो कंप्यूटर और एक रखें गए हैं और एक फोन मिलाने वाला भीं और एक रखें गए हैं।

इसमें कुछ बैठक लोग घूमने आए हैं पांच सेट दिखाई दे रहे हैं जो कि शाम के समय में मस्ती लेते हुए --

और इसमें अलग अलग प्रकार के कई वैरायटी ऑफ़ क्वांटिटी और क्वालिटी के चश्मे मिल जाएंगे और जो दो कुर्सी भी रखी हुई है वो --

इस तस्वीर में मै देख पा रहा हूं मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है।

बाहर की तरफ में ग्राउंड खुला हुआ नजर आ रहा है।

जो पिकोल दिखाई दे रहा है जोकि एक दुकान है जिसमें इलेक्ट्रिक सामान की दुकान जोकि लगायी गई है जिसमें है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे लकड़ी की जो कि मेज और टेबलें भी दिखाई दे रही हैं जिसमें पानी की बोतलें रखी गई हैं।

और जो की पलेटें भी रखी गई है इसमें खाना खाया हुआ लग रहा है ये होटल या रेस्टोरेंट हो सकता है बहोत ही वी_आई_पी लग रहा है।